बचे पढ़ते हुए दिख रहे है बचे जमीन पर बैठे हुए दिख रहे है। जो की बहुत ही अच्छे लग रहे है बचे स्कूल का काम कुछ प्रोजेक्ट करते दिख रहे है कुछ इसमें बच्चे सभी लड़कियां दिख रही है मैडम दिख रही है जो सफेद कपड़े पहनें जो की बहुत ही अच्छी लग रही है।

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको ब्रिज दिख रहा है ब्रिज हमको पुराना सा दिख रहा है ब्रिज के कोने पर रेलिंग लगी हुई है जो की सीमेंट की रेलिंग दिख रही है साइड में हमको आदमी दिख रहे जिसमें तीन-चार आदमी--

जाली लगी हुई जो की कलर की दिख रही है पीछे से धुप आ रही जो की बहुत अच्छी दिख रही है बहुत सूंदर दिख रही है बहुत ही प्यारी लग रही है।

गम दिख रहा है किसी के हाथ में कुछ पेन्सिल दिख रही है किसी के हाथ में कुछ रबड़ दिखाई दे रही जो की बहोत अच्छा लग रहा है पीछे दीवारे दिख रही है जो की गुलाबी कलर की दिख रही है इसमें जालियाँ लगी हुई हैं।

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हमको एक हॉल दिख रहा है हॉल के अंदर बच्चे कुछ प्रोजेक्ट बनाते हुए दिख रहे हैं जिसमें शीट दिख रही है हरी कलर की सफेद कलर की शीट दिख रही है बच्चों के पास कलर दिख रहे हैं फेविकोल दिख रहा है।

जैसा की हम देख सकते है सामने हमको बड़ा सा हॉल दिख रहा है बड़ा सा हॉल स्कूल इस स्कूल का हॉल दिख रहा है हॉल के अंदर हमको बच्चे दिख रहे है जो की बहुत सारे दिख रहे है बच्चे ने मूह मे मास्क लगा के एक लड़की दिख रही है मैडम ने मास्क लगाया हुआ है लड़की ने लाल फ्रॉक पहनी हुई है।

नीले कलर के उनके बैकग्राउंड बने हुए हैं इनमें गले में फूलों की मालाए पहन रखी है जो की बहुत सुंदर दिख रही है एक आदमी दिख रहा है जो की सफेद कपड़े में दिख रहा है पीछे दीवार जो की मार्बल की बनी हुई है।

इसमें एक आदमी अंदर खड़ा हुआ है जो कि दो आदमी बाहर है जो की बोरा लेकर ट्रक के अंदर जाते हुए दिख रहे है इनके हाथ में बोरे है जो कि ट्रक में भरने के लिए तैयार दिख रहे है नीचे में एक बोरा दिख रहा है पीछे में खूब बोरे रखे हुए दिख --

हम को रेलिंग पर लाइटिंग लगी हुई दिख रही है जो भी गोल्डन कलर की लाइटिंग लगी हुई दिख रही है एक पेड़ दिख रहा है जो की हरा कलर का दिख रहा है जिस पर लाइटिंग लगी हुई दिख रही है जो की हरे कलर की लगी हुई दिख रही है।

जो की बहुत ही प्यारे दिख रहे इसकी चेयर्स एकदम ऊंची ऊंची दिख रही है टेबल्स ऊंची ऊंची दिख रही है सामने मिरर लगे हुए जो की बहुत ही बहुत प्यारे लग रहे है।